तैयारी की जा रही है इसमें--

ये राधा कृष्ण भगवान की--

ये मेले का दृश्य--

काफी बड़े बड़े झुल्ले लगे हुए हैं।

ये शूटिंग चल रही है।

तीन से काम कर रहा है।

इसके हाथ में रैकेट पकड़ा हुआ है।

इसमे पेशेंट के लिए एक बेड पड़ा है।

टेबल के ऊपर टिशूज --

इसके ऊपर इंडियन ऑयल लिखा है।

माला को दुकान के बाहर टांग रखा है।

जीप्स का कलर ब्लैक है।